इनमे से कुछ टमाटर है कुछ मिर्ची है कुछ नीबू है कुछ आलू है कुछ गोभी है कुछ गाजर है और बी अन्य तरह की सब्ज़ियाँ यहाँ मौजूद है|

आस पास हमे कुछ गाधि और कुछ लोग भी देखने को मिल रहे है|

का दृश्य है वही हमे साइड में बहुत सारी दुकाने लाइन से लगी दिखाई दे रही है हर दुकान के ऊपर एक एक पोस्टर लगा हुआ है सामने की और हमे एक एक गाडी भी खड़ा दिखाई दे रहा है|

एक वरटा_पार्क के बहार का है जहा हमे एक डॉल्फिन दिखाई दे रही है वाल्स को बहूत ही सुन्दर तरीके से बनाया गया है|

एक ज़ू का तस्वीर है यहाँ हमे एक हिरणी देखने को मिल रही है|

यह ज़मीन पर रेंगते हुए दिखाई दे रहे है हमें यहाँ आस पास कुछ घास और कुछ पेड़ भी नज़र आ रहे है|

ष्य एक मंदिर की है जहाँ बाहर की और हमे भगवन की मूर्तियां बानी हुई देखने को मिल रही है|